यहां सामने मुझे मूर्तियां बोहोत ही प्यारा लग रहा हैयहां सामने का व्यू शायद ये उनकी मोम है और ये उनका बच्चा है ये दोनों प्रे कर रहे है गॉड से आप सब देख सकते हैकितना प्यार लग रहा है।

यहां सामने मे मुझे एक माला का हार दिख रहा है जिस के ऊपर में रेड कलर के फलावेर है सेकंड मे ऑरेंज एंड थर्ड में ब्लू कलर का बोल लगा है।

फ़ोर्थ मे फिर से ऑरेंज कलर है फीफथ मे रेड कलर का फलावेर एण्ड उसके बाद येलो फलावेर फिर बीच में रेड कलर का बोल एण्ड फिर येलो एण्ड ऑरेंज बहुत ही प्यारा हार हैये।

यहाँ सामने में मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे है जो के यह गोवर्मेंट स्कूल के दिख रहे है यहाँ पे बोहोत ज्यादा भीड़ लगी है और साइड में कुछ लेडीज भी खड़ी है यहाँ पे तीन बच्चियाँ हैजो के टीचर शायद उन्हे ही देख रही है ये बच्चे भी बोहोत खुश लग रहे हैशायद यह टीचर की वजह से--